एक रेलवे का बिल्डिंग है यहाँ पर अटरा सौ--

और यहाँ पर एक टेबल के ऊपर फर्नीचर के ऊपर कुछ बोटल से तेल का बॉटल दिख रहा है।

और एक आदमी वहां से जा रहा है और यहां से पहाड़ दिख रही हैं।

बेकरी प्रोडक्ट मिलते हैं कुछ लोग यहाँ पर कुर्सी पर बैठे हुए हैं।

इसमें एक कंप्यूटर दिखाई दे रही है एक दो कंप्यूटर्स है।

कटिंग करते हुए दिख रहा है और यहां पर एक--

और यहां पर एक नाटक कर रही--

यहां पर लाइटिंग भी लगाई गई है।

कुछ लड़के लोग दिख रहे हैं और तस्वीर निकाल रहे हैं।

एनीटाइम एक सब हर टाइम फर्तन यहाँ पर मिलता है।

और यहाँ पर कई गाड़ियाँ दिख रही हैं यहाँ पर रोड है।

और वहाँ पर बहुत सारे कुछ कुछ खिलौने बच्चों को खेलने के लिए ।